और यह एक अखबारों की कागज की शौप है।

जहां पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है।

और कितने ही चेयर पड़ी हुई है।

यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और कई डिजाइन के पेड़ पौधे हैं।

और एक एल_सी_डी लगी हुई है।

मैदान है और यहां पे नीचे घास वास है।

अ लकड़ी का काफी सामान पड़ा हुआ है।

रोड के पास खड़ी हुई है।

यहां पर नीचे ईंटे बिछी हुई है।

और यहां पर नीचे टाइल लगी हुई हैं।

और पीछे कितने ही स्टूडेंट्स और टीचर खड़े हुए हैं।

और सामने एक टीचर है जो वीडियो बना रहा है।

तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं।

दो व्यक्ति है जो अंदर है।

उसके सामने टेबल रखी हुई है।

और एक अलमारी रखी हुई है।

उसमें काफी सामान रखा हुआ है।

ये मार्केट का एरिया लगता है और यहां पे भाई पोस्टर लगे हुए हैं आई_सी_एस के।